गार्डन दिख रहा है एक घर दिख रहा है बहूत सारे पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ आसमान दिख रहा है वाइट कलर का एक लड़का दिख रहा है किसी रूम में बैठ हुआ है एक चेयर पर बैठ हुआ है।

ये एक कॉफ़ी शॉप बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे बैरिस्टा नाम से ये रेस्टोरंट बना हुआ है ठीक है इसका जो गेट है ट्रांसपेरेंट गेट है उसपे भी बैरिस्टा लिखा है बहुत सारे और बहुत सारे मेनू बना हुआ है और एक और एक यहाँ पे एक व वेटर है।

ये एकस्टारबक्स के नाम से वो बना हुआ है यहाँ पे ने एक डे रेस्टोरंट बना हुआ है यहाँ पे बाहर ताई टेबल लगे हुए है।